फूलों से डेकोरेट किया गया है।

इसकी छत की दीवारों पर बहुत सारी लाइट भी लगी है।

बैंक का कलर व्हाइट एंड रेड है।

इस फोटु में एक सैलून है।

कुछ जमीन भी है खाली।

एक बड़ा सा सिलेंडर भी है।

ई जमीन पत्थर की ईट से बनी है।

इसमें बहोत सारे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

एक कुर्सी भी रखी हैं।

इसमें बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं।

सामने बहुत सारे पेड़ भी हैं।

इस फोटो में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।